दिखाई दे रहे हैं जो काले ब्राउन और सफेद रंग की है सामने बड़े-बड़े पेड़ दिख --

कुछ मिट्टी पड़ी हुई है ।

यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक काले रंग की रेलिंग लगी है।

यहाँ एक टैम्पो दिख रहा है जिसपर माल लोड हो रहा है यहाँ पर सफ़ेद रंग की बोरियां --

सामने एक लाल कलर के से लिखा हुआ ओम दिखाई दे रहा है | एक दिखाई दे रहा है |

तीन मूर्तियां खड़ी हुई हैं एक आदमी खड़ा हुआ है नीचे एक कलश रखा हुआ है दो --

यह एक पार्लर दिखाई दे रहा है सामने एक सफेद रंग की बुक पड़ी है जिसपे --